और यहां पे कुछ करें अंदर खड़ी हुई है।

और उस तरफ कुछ और आदमी खडे हुए है बगल मे--

अ वो बना हुआ है एक प्लेटफार्म टाइप से कुछ बना--

तरबूज और एक टोकनी रखी हुई है।

को पकड़े हुए हैं जैसे व्हील चेयर टाइप की हो ये --

और बाहर तरफ में दो चेयर जैसी गोल चेयर बनी हुई रखी हुई हैं।

दो तरफ के शेड बने हुए हैं दो जगह पेट्रोल डलवाने का--

बाहर तीन लोग खड़े हुए हैं और एक व्यक्ति एक बाउंड्री सी खिंची है।

नीचे में एक कार पार्किंग का --

इस भगन में पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

सामने साइड में एक महिला बैठी हुई है जो कि हुई--